दस बारा बेंच है और क्लास रूम है पांच।

बहुत बड़ा हॉल है इसमें पचास सौ ऊपर कुर्सियाँ हैं इसमें सौ पचास से ऊपर लाइट है।

और यहां पे खाना पीना भी है सोफा लगा हुआ है।

राधा-कृष्ण का मूर्ति है बहुत सुंदर है मूर्ति है मूर्तियों उजला कलर का है इसमें चमकीला कलर का बॉर्डर दिया गया है।

यह एक पे मूर्ति का शोरूम है यहाँ पर अलग-अलग कलर की मूर्ति होता है जैसे देवाल पे टंगे एक पेड़ की पेंटिंग और ये --

हरे कलर का देवाल है इसमें दो शटर है एक गेट है।

घर है यहाँ पे आठ रूम है पेड़-पौधे है यहाँ पे नव पौधे है एक बड़े पौधे है।

और यहां पे दुकान खुली है बगल में यहां पे दंत्कांति पेस्ट है।

तेल है बाल रंगने वाला कलर है करकट लगा हुआ है।

आर आसमान नीला है यहां पे बच्चे खेल रहे हैं इसके अगल-बगल बहुत सारे घर बने हुए है जैसे पीले वाला मकान।

सरक के किनारे जंगल है जंगल टाइप के हैयहां पे --

इस बीच एक रस्ते निकले हुए हैं रास्ते के बीच में उजला कलर का --

बहुत बड़े रहते है इसके अंदर रह सके अब इन्हे खाने के लिए भी घास उस उगे हुए हैं।

और यहाँ एक नया पूल का अविष्कार हो रहा है देखिए यहाँ पे पांच-छे खम्बा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे प्रति साल इतनी भीड़ होती है की --

हाथ दिख रहे है और यहाँ पर कसरत करने के बहुत सारे औजार है ये पोस्टर लगे हुए हैं।

जल में उत्तरी हुई है और ऑरेंज कलर का साड़ी बैंगनी कलर का साड़ी पिंक्स कलर का साड़ी पेहनी और यहाँ पे लड़के लोग पीछे खड़े हैं।

और यह पर पिंक कलर का देवाल है।

बैंक ऑफ़ बड़ोदा है जो हमारे में बैंक खुले हुए है यहां पे एक सी.सी.टी.वी. कैमरा है अर यहाँ एक लैपटॉप है अर हम भी लैपटॉप में ही देख रहे अर एक --

जो यहाँ पे पैसे रखता है जमा करता है इ उजले कलर का है।

यहाँ पे पेड़-पौधे है हरे कलर का हम यहाँ पे --

रोड के आविष्कार किया गया है रोड के किनारे उजाले और लाल कलर का बॉर्डर है।

नगर निगम कार्यालय है यहाँ पे कचड़े का गाड़ी खड़ी है यहाँ पे दो गाड़ी हैं एक नया गाड़ी एक पुराना गाड़ी उजला कलर का।

यहां पे आस-पास घर है उजला टंकी है।